जैसा कि मैं देख सकता हूं कि मुझे यहां पे मुझे कुछ शादी बियाह का सनसन वाला कुछ माहौल दिख रहा है और--

इसका टेंट का कलर बहुत सफेद है और बहुत अच्छा लग रहा है ये टेंट बगल में साइड में इसमें बोर खड़ी कर दी है एक शोभा की तरह से--

और ये बहुत मनभव नर्सी लग रही हैमुझे तो--

जैसा की मुझे देख सकता हूं यहां पे एक प्लेट दिखाई दे रही है जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे है एक एक नाश्ते की प्लेट लग रही है।

और इसको रिपेयर किया जा रहा है शायद इसके इंजन में ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।

इसके पीछे एक आपको शरूम दिख रहा हैजो कि मैक्स दिखाई दे रहा हैउस परे लिखा हैमैक्स करके--

तो ये गेम का बोर्ड लगा हुआ है यहां पर रेड कलर में--

जैसे कि मैं देख सकता हूं इस फोटो में मुझे कुछ मंदिर नजर आ रहा है और जो प्राचीन काल का मंदिर मुझे लग रहा--

इसमें मुझे सही से तो नहीं नजर आ रहा लेकिन मुझे दिख रहा है ये बाबा देव नारायण का मंदिर बड़गिरी था में लग रहा है।